एक है जिसमे काफी लोग दिखाई दे रहे है काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है एक झाड दिखाई दे रहा है ऊपर बिजली के खंभे दिखाई दे रहे है।

एक गेट है ऊपर मस्जिद है एक खंभा है बोर्ड लगा हुआ है।

किला है जिसमें ऊपर फैन लगा हुआ है नीचे पत्थर दिखाई दे रहे है सामने उजाला आ रहा है ऊपर फैन है।

पत्थर में कुछ नकाशी की गई हैं कलर दिखाई दे रहे है ऊपर एक तार दिखाई दे रही है अंदर एक म--

एक पुल है पुल जिसमे खड़ा हुआ है उसमे सीमेंट के पिलर काफी बड़े बड़े दिखाई दे रहे है पानी दिखाई दे रहा है।